पीछे कुछ कांच के गेट दिखाई दे रहे हैं बगल में एक लोहे का सोटर लगा हुआ हैं जहाँ से सीढ़ी ऊपर की और जाती हैं ऊपर एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ हैं।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा मीनार जैसा कुछ है जिसके ऊपर एक बोहोत बड़ी गुम्बज बनी हुई है जिस --

पानी का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है यह देखने में बहुत ही सुंदर व आकर्षक है।

अगल बगल बहोत से लोग दिखाई दे रहे हैं और यह नांव एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है।

ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहोत सारे छोटे-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है यह देखने में बहोत ही सुंदर और मनमोहक --